जहां शायद लोग योगा कर रहे हैं।

जिसको शायद एक कार खराब हो गई है उसको बनाने के लिए दिए हैं।

अ बहोत बड़ा बुक डिपो जैसे रा--